और यहां पे बहोत सारा आदमी लेने भी आया है।

और फिर मेडिसिन भी रखा हुआ बहुत सारा और यहां पे टेलीफोन भी रखा हुआ है।

स्कूल है यहां पर स्कूल का बैनर दिख गया--

बिंदी है और भी बहोत सारे चीज रखा हुआ है आलता भी है।

और यहां बहोत सारा पेड़ है।

और सब तालिया बजा रहे हैं और यहां एक फूल फूल का थैला भी रखा हुआ है।

यहां स्कूल का चित्र दिखाया गया है।